और पहाड़ भी दिख रहा है और साइड में कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

जो पर्पल कलर के हैं ऊपर इनवर्टर भी दिख रहा है।

यहां पे तीन चार कुर्सियां बनी हुई है पीछे भी प्लाईवुड है।

ब्राउन कलर की कुर्सी और उसका ब्लू कलर का पीछे से कुछ दिख रहा है यह वॉल जैसा सा।

ये एक मिस्त्री की शॉप जैसी दिख रही है।